दुकान है जहां पे अलग-अलग तरह के फूल आपको मिल--

और देश मे विदेश मे हर जगह लोग टेटू आज कल बनवाना--

कुत्ता जो है सुपरस पर बैठा हुआ है पेड से गिरे हुए फूल बहुत सारे नजर आ रहा है।

और कहीं दूर में एक दो आदमी व्यक्ति बैठा हुआ--

पिस्ट्री की दुकान है बहुत सारे पिस्ट्री की दुकान एक लाइन से खड़े हैं।

की तस्वीर ली हुई है कोई सड़क किनारे की पेस्ट्री की दुकान है बाइक वगैरह इकट्ठा है।

आ जाता है जहां पे हम लोग जाकर के गाड़ियों में पेट्रोल आदि भरवाते हैं।

हम लोग देख रहे हैं कि एक मंजिला मकान के नीचे तीन दुकानें बनी हुई हैं जो कि नजर आ रही है खाली सड़क से।

यूनिवर्सिटी का दृश्य नजर आ रहा है किसी यूनिवर्सिटी का दृश्य जहां पे पानी जमा हो चुका है सड़क प--

फूल पौधे भी लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी वगैरह का दृश्य ऐसा ही रहता है।

यूनिवर्सिटी का लॉन नजर आ रहा है ये किसी पुरानी यूनिवर्सिटी का लॉन है।

पढ़ाई वगैरह भी करते हैं तो ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल स्कूल होता है जिसको केंद्रीय विद्यालय भी हम लोग कहते हैं आप उसकी बिल्डिंग देख रहे हो कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट्स यानी कि खड़े है।